बड़ा काला गाड़ी बोलेरो --

लायब्ररी है यहाँ बहुत सारे बुक्स है सभी यहाँ बुक पढ़ने आते है चारो तरफ से उपर लाइटिंग लगा हुआ है काफी मात्रा में बुक्स रखा हुआ है सभी आकर यहाँ पढाई कर--